का पर्दा लगा हुआ है।

यह एक हॉल है हॉल में कुछ स्टूडेंट बैठे हुए हैं |

यहाँ पर हॉल में लकड़ी की कई सारी मेज़ें बनी हुई हैं। यह काफी सुन्दर लग रहा है। लाइटिंग व्यवस्था यहाँ पर काफी सुन्दर है सामने जो खिड़की लगी हुई है जालीदार उसमें परदे लगे हुए हैं।

ऊपर जो सजावट है वह फूल पत्तियों से की गई है।